एक छत है छत में कुछ आदमी लोहा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ व्यक्ति खड़े दिखाई दे रहे हैं ।

नीचे जमींन हैं। जमीन में दो भगव भगवान की मूर्ति बनी हुई हैं और इसके चारो तरफ---

एक हॉल है। हॉल में काफी काफ बीम दिखाई दे रही हैं जिसमें एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

मैदान है मैदान मे एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने मास्क लगाया हुआ है और एक एक पैर उसके पकड़े हुए है।

ग्राउंड है जिसमे कुछ लोग खड़े हुए हैं कुछ प्रेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं| एक पेड़ दिखाई दे रहा है कुछ लोग उसमे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

दिखाई दे रहा है ग्राउंड में काफी सारे लोग खड़े हुए दिखाई दे रहें हैं कुछ झूला दिखाई दे रहा है पीछे बॉउंड्री दिखाई दे रही है।